जो एक के पीछे एक खड़े हुए हैं। बाजू मे लकड़ी के पटिये जैसी एक साइकिल खड़ी हुई है।

पीछे बहुत बड़ा पेड़ बना हुआ है जो काफी बड़ा बना हुआ है।

पे भी काफी सारे कपड़े टंगे हुए हैं। बैंगल्स हैं।

बाजू मे बिल्डिंग बनी हुई है जो चौकोर से फैली हुई है। जिसमे ऊपर रेलिंग बनी हुई है और बालकनी जैसे बनी हुई है।

अंदर कुछ सामान रखा है। सामने सीढ़िया बनी हुई हैं।

यहाँ पे सामने काफी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां पे एक शॉप बनी हुई है जिसमें ऊपर सामान लटक रहा है। काफी सारा सामने रखी हुई है। कुछ बन्नी है पीछे।

यहां पर काफी सारा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे उसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। एक अंकल जी साइकिल रखे हुए --

पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। पीछे काफी सारे लोग दिखाई दे रहा है। ऊपर बादल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर सामने महजीद बनी हुई है। जिसमें ऊपर लंबी लंबी गुमटे बनी हुई है।

यहाँ पे सामने लड़कियां दिखाई दे रही जो ड्रेस पहने हुएं। पीछे काफी सारे लोग व टीचर्स देखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर सामने आपकी बहुत बड़े गणेश जी रखे हुए है जिनके आजु -बाजु में डेकोरेशन किया गया है सामने एक चुड़िए जैसे बनाए गए हैं।

बोत पानी भरा हुआ सामने बोहोत बड़ा पेड़ लगा हुआ सामने ईंटो की तरह दिखाई दे रही है पीछे पहाड़ की तरह दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे काफी सारा ग्राउंड डला हुआ है। नीचे पक्का फर्श है।